यहां पर टाइल्स बिछा हुआ है यहां पे एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है।

यहां अखड़ा लिखा हुआ दिख रहा है यहां कुछ कुर्सी भी नजर आ रही है।

यहां कुछ सीढ़ियां बनी हुई है या तस्वीर दिन के समय लिया गया है।

यह तस्वीर किसी नर्सरी की है यहां पे बड़े बड़े पेड़ और कुछ पौधे लगे हुए हैं।

यह तस्वीर किसी पार्क की है यहां एक बड़ा सा स्टेचू बना हुआ है।

यहां बूढी मां की मूर्ति भी बनी हुई है।

यहां खिड़कियां भी दिख रही है यहां बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है।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

यहां पे राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची लिखा हुआ है।

यहां बहुत सारे पिलर लगे हुए हैं।

यहां पे कुछ लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पानी बहता हुआ दिख रहा है यहां कुछ पत्थर भी नजर आ रहे है।

यहां पर बहुत सारे घास दिख रहे हैं।

यहां काफी सारे हिरण चरते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां एक एल_सी_डी टी_वी लगा हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ मोटरसाइकिल दिख रहे हैं।

यहां बहुत सारे फूल लगे हुए हैं जो आर्टिफिशियल है यहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां रिक्शा से कुछ बोरे लाए गए हैं।

यह तस्वीर किसी नदी की है यहां पर काफी सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

यहां मंदिर का कलर लाल रंग से रंगा हुआ है।